पेड़ पौधे हैं घरे है।

टाइल्स ल ग पेंटिंग कर रहे हैं टाइल्स लगा हुआ है।

फ्लोर है और उम्म उम्म फ्लावर्स लगे हुए हैं दो गो जेडीयल है लाइट्स हैं और डी_जे वाला है।

यहां पे मंदिर में फोटो है।

ढेर सारा काम चल रहा है आदमी हैं।

पेड़ पौधे हैं सुबह का टाइम है यहां देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।

और नीचे बहुत कचरा हैं यह देखने में